यह एक बिल्डिंग है जिसमे परदे लगे हु है।

यहा एक योगा क्लासिस है जहा पर बहुत सारी औरते योगा कर रही है औरतों ने अपने दोनों हाथों को पीछे व पेरो को आगे ला कर हाथों से पकड़ा हुआ है।

यह एक चादर के उपर लेटी हुई है दीवार पर परदे व डिज़ाइन बनी हुई है।

यहा बहुत सारी लड़किया खड़ी है जो अपना फोटो शूट करवा रह है।

यह एक बिल्डिंग है जिस के सामने बहुत सारी मोटर-साइकिल व स्कूली पार्क की गई है।

यह एक गेट बना हुआ है जिसके उपर महारास्त्री पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मधये आपले सहष स्वागत लिखा हुआ है।

यहा बहुत ही सुंदर सजावट की गई है जिस मे वाइलिट पुतले व फूल लगे हुए है।